सामने में एक पुस्तक का दुकान है जिसका नाम है विजय पुस्तक भंडार उसमे ए --

यह एक किराना स्टोर है जिसमें बहुत सारे सामान रखा हुआ है जिसमे की एक फ्रिज भी है पानी भी मिलता है यहाँ पे ।

बजाज का शोरूम है। यहां पे बहुत सारे बाइक लगी हुई है जिसमें की दो फ्लोर बने हुए --

और एक आदमी कैमरे से उसकी फोटो भी ले रही है बगल में उसके एक ऐंटो भी खड़ी है।

यह एक ऑफिस है जिसमें बहुत सारी केबिन्स बने हुए हैं और इस ऑफिस में तीन शटर लगे हुए हैं।

पैलेस के ऊपर में लाइट्स भी लगे हुए हैं। पैलेस के बगल में एक पेड़ भी है।

यहां पे एक रिक्शा खड़ा है उस पे रिक्शावाला बैठा हुआ है और बहुत सारे लोग भी हैं।

यहाँ पे बहुत सारे पेड़ भी हैं बच्चों के पेरेंट्स ने साथ मिलकर उनके साथ एन्जॉय कर रहे हैं।

यह एक डेरी स्टोर है जिसपे लिखा जिस बोर्ड पर लिखा है --

भवन भी बना हुआ है गमले में बहुत सारे फूल भी लगे --

यहां पे बहत सारे स्टोर्स हे --

तीन फ्लैट पर ग्रिल लगी हुई है व्हाइट कलर के पेंट्स का यूज किया हुआ है और बिल्डिंग के बगल में --

यह गंगा नदी जैसी दिख रही है जिसमें की दो लड़के खड़े हैं।

यह एक जनरल स्टोर है यहां पर ब्रेड्स रखे हुए हैं और कुछ बोर्ड लिखा हुआ --

यहाँ पे सर्फ साबुन और भी मिलते हैं यहाँ पे ऑनलाइन स्कैन करने की पेमेंट करने की भी सुविधा उपलब्ध

वॉक करने के लिए आदमी खड़े --

एक छोटा-सा बच्चा भी है और एक लेडिस और जेंट्स खड़े हैं जो की मंदिर की तरफ देख रहे हैं ।

यह एक मंदिर जैसा है जो की बीच में एक घंटी बहुत बड़ा घंटी लगा --

अगल-बगल में पेड़-पौधे भी हैं। --